इस दृश्य में मैं एक रोड देख पा रही हूं।

साइड में मैं एक मकान भी देख पा रही हूं आसपास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी बॉक्सेस रखे गए हैं।

और चिप्स के पैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सारी इमारतों को देख पा रही हूं जो कि चारों तरफ से बने हुए हैं।

साइड में मैं एक पानी का बॉटल देख पा रही हूं।

चम्मच और देख पा रही हूं।